यहां पर बहुत बड़े बड़े पोस्टर भी लगा रखी है यहां पर नीले रंग के पर्दे भी लगा रखे हैं यहां पर पत्थर बिछा हुआ है यहां ल--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

जिसकी खिड़कियां कांच की बनी हुई है जो ब्लैक कलर की है यहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर मैक्स एक्स मसल्स लिखी हुई है उस पर एक नंबर भी लिखा हुआ है।

यह एक जिम शॉप है यहां पर एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिस पर वाइट कलर से द मसल्स फैक्ट्री जिम लिखा हुआ है।

इसके नीचे दो शटर लगे हुए हैं जो ब्राउन कलर के हैं जिनमें से एक शटर खुला है और एक बंद है।

यह एक मकान है जिसमें येलो कलर का पेंट कर रखा इसमें बहुत सारे विंडो दिखाई दे रही है।

यहां पर चढ़ने के लिए रस्ता भी दिखाई दे रहा है इसके बराबर में एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

इसका डिजाइन बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है इसके पीछे एक शटर दिखाई दे रहा है।

यहां पर ऊपर की तरफ कफ सिरप्स रखी हुई है यहां नीचे भी बहुत सारी दवाइयां रखी हुई हैं।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

यह एक दुकान है जिसके बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिस पर रेड कलर से बाबूजी संगल हार वाले लिखा हुआ है।

यहां पर एक डांस प्रोग्राम हो रहा है यहां एक लड़की ने साड़ी पहन रखी है।

जो रैक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के हैं यहां पर टेबल वाले सोफे भी रखे हुए हैं।

नीचे भी गुब्बारों से डिजाइन बनाया हुआ है उसके नीचे लाइट लगा रखी है यहां ऑरेंज और वाइट कलर की कुर्सियां भी रखी हुई है।

इसके बाहर एक येलो और ब्लैक बाइक ख़डी हुई है। इसके बाहर भी छोटे छोटे प्लांट दिखाई दे रहे हैं।

इसके अंदर बहुत सारे मोबाइल रखे हुए हैं इसके बाहर एक पानी का कैंपर भी रखा हुआ है।

यह एक फिटनेस स्टोर है यहां पर बहुत सारे लोहे की मशीने रखी हुई है जो येलो और ब्लैक कलर की है।

यहां पर बोहोत बड़े बड़े मिरर लगे हुए हैं। ऊपर छत में एक बल्प और एक पंखा लगा हुआ है। यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसके हाथ में फोन है।

यह बच्चों का स्कूल है यहां पर छोटे छोटे बच्चे येलो और रेड कलर की टेबल पर बैठे हुए हैं।

यह एक होटल है यहां पर दो बड़े बड़े सोफे दिखाई दे रहे हैं जो नीले रंग के है उनके सामने गोल टेबल रखी हुई है।

यहां एक कुर्सी पर बैग भी रखा हुआ है वाइट कलर की दीवार में एक मैप बना हुआ है जहां पर इंडिया भी लिखा हुआ है।

यहां पर येलो और ब्लैक कलर के कपड़े भी टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ सफेद रंग की मंदिर की चोटी दिखाई दे रही है।

यहां पर बाइक खड़ी हुई भी दिखाई दे रही है। यहां पर मिट्टी पड़ी हुई है। बाहर मकान बने हुए --

यहां पर एक बड़ा सा और पोस्टर लगा हुआ है जिसमें एडमिशन ओपन लिखा हुआ है यहां और भी पोस्टर लगे हुए हैं।

यह एक क्लासरूम है यहां पर बहुत सारे टेबल्स रखी हुई है जो व्हाइट और ब्लैक कलर की है।